एक आदमी जो है वह अपनी बस को साफ कर रहा है जो कि बोहोत से बड़े मैदान में है और साथ ही साथ यहाँ पर हमें एक बिल्डिंग भी दिख रहा है।